चोटी है ऊपर की तरफ वो गोल्डन कलर की बनी हुई है और पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर बहत सारे लडकिया खड़ी है जिन्होंने कुछ ड्रॉइंग पैंट की है।

बोहोत ही सुन्दर ड्राइंग लग रही है ये उस ड्राइंग को दिखा रही है जो ड्राइंग उसने पेंट की है ।

स्कूल का ड्रेस कोड पहना है और वो ग्राउंड में खड़ी है उनके पीछे स्कूल भी है आसपास छोटे छोटे पौधे भी लगे--

यहाँ बहुत सारे वायर के बंडल रखे हुए हैं गोल आकृति में जो बंडल प्लास्टिक के होते हैं उसमे लपेट कर वायरो --

और इनके पीछे बहुत सारे बड़े पेड़ लगे हुए हैं आसपास में कुछ घर भी बने हुए दिख रहे हैं यह--

और पीछे की तरफ एक अलमारी बनी है जिसमें बहुत ज्यादा सामान रखा है एक पंखा लगा हुआ है और सफेद कलर की लाइट भी लग--

यहां पर दो शॉप है जो किसी सुपर मार्केट की है और यहां पर जो बैनर और पोस्टर लगे हुए--

और इधर अ फ्रंट साइड में बहोत सारी ग्राउंड जैसी जगह खाली भी है ट्रक के आसपास में जो खाली पड़ी हुई है।

यहा पर एक स्टेज है जिसे ब्लू और पिंक कलर की लाइट से बहोत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया--

बहुत ही सुंदर द्रश्य हैं ये पूरा पार्क हैं और यहाँ पर छोटी छोटी घास लगी हैं पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हैं ।

कुछ बड़े लोग भी हे पीछे की तरफ एक रेड कलर का एक घर बना--

और घरों के पीछे की तरफ भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं पीछे की त--

सारे पेड़ लगे हैं और अपोजिट साइड में भी पेड़ लगे हैं यह एक टू लाइन रोड है।

सामने की तरफ खड़े हैं एक व्यक्ति गेट में अंदर की तरफ जा रहें--

अलमारी में बहोत अच्छे तरह से यहां पर कुछ ढोलक कुछ पियानो और भी हारमोनियम वगैरह--

सफ़ेद कलर की लाइटिंग लगी हुई है और एक पंखा चल रहा है बहोत ही संध्या--

कुछ पोस्टर बैनर टंगे हुए हैं इसमें बहोत सारे पेड़ भी लगे हैं कुछ स्कूटी और साइकल्स खड़ी हैं।

वो इसे देख रहे हैं और एक बैनर लगा है जिस पर कुछ लिखा है दो महिलाएं भी खड़ी है।

फ्लॉवर डेकोरेशन के नाम से है वहापर और भी पीछे की तरफ बहुत सारी कार खड़ी है आसपास में और भी शॉप है।